यहाँ पर बोहोत सारी कुर्सियां रखी हुई हैं और यहाँ पे बोहोत सारे लोग भी हैं । इस जगह के चारो और शीशे लगे हुए हैं और इस जगह पर कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं । यहाँ बोहोत सारे लोग अपने-अपने काम के लिए आए हुए हैं ।

यहा एक सड़क है इस सड़क के किनारे में बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है और यहाँ एक बहुत बड़ा घर बना हुआ है इस सड़क के बगल में बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं और यहाँ बहुत सारे घर बने हुए हैं।